यहाँ पर एक रोड है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पोधे लगे हुए हैं यहाँ पे एक घर बिल्डिंग बनी हुई है एक पे रेली रोड चल रहा रोड खाली पड़ा हुआ है| यहाँ पे ब्लैक कलर की बनी हुई हैं फूल के भी पौधे लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं|

वाइट कलर की बड़ी सी यहाँ पे कांच लगे हुए हैं । बोहत सारे वायर भी लगे हुए हैं ।यहाँ पे आशीष श्रीवास्तव लगा हुआ है नर्सिंग होम हैये क्रिटिकल केयर सेंटर |यहाँ पे है ना बहुत सारे ब्लैक कलर के वायर लगे हुए हैं ऊपर बोहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं।

ये एक हॉस्पिटल है। यहाँ पे से एक आ रहे हैं जिनके मास्क लगा हुआ है। उनके हाथ में कुछ फाइलें हैं और यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं टेबल पर और यहाँ पे एक बड़ी सी लाइट लगी हुई है।

बना हुआ है बहोत सारे पर्दे लगे हुए हैं वाइट रेड कलर के भी बहोत सारे पर्दे लगे है यहां पर बहोत सारे मकान भी बने हुए हैं।

मुझे हो रहा है। यहाँ डीजे बज रहे हैं। यहां पे एक बहोत बड़ा का कारपेट बिछा हुआ है। यहां पर एक अंकल एक बच्चे को लेकर खड़े हुए हैं। यहां पर बहोत सारे लोग देख रहे है। आस-पास घूम रहे हैं।

और यहाँ पे अनार भी रखे हुए हैं। यहाँ पे वाटरमेलन भी रखा है। यहाँ पे अनानास भी रखे हैं। कच्चे केले भी रखे हैं। यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है।

निति नीट आई.आई.टी.जी. फाउंडेशन कॉमर्स क्लास है। यहाँ पे निजोन टेलर की भी दुकान है। यहाँं पे एक्टिवा भी खड़ी है। यहाँं पे चाय की भी दुकान है। यहाँं पे काउंटर भी रखा हुआ है बाहर ब्लू कलर की टंकीया भी रखी है। एक लड़का जा रहा है यहाँं पे ।